यह एक मंदिर का दृश्य है जहां बहुत सारे आदमी खड़े हैं कुछ बैठे हुए हैं एक।

टोंगा लगाया हुआ है। एक पीला कलर का पोस्टर है। पीछे रेड कलर का पोस्टर है।

बगल में एक लड़का खड़ा है जिसने ब्लैक और वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

बगल मे फ्रीज है फ्रिज का कलर ब्लैक और ब्लू मे है। एक लिखा हुआ है पेप्सी ।

बहुत सारे आदमी खड़े हुए है।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

यह एक बिल्डिंग के बाहर का दृश है।

जहां बहुत सारे वर्ड में कुछ कुछ लिखा हुआ है एक लिखा है ट्रेंड मॉल्स ।

कुछ बच्चियां खड़ी हुई हैं पीछे और वाइट कलर की पहनी हुई है।

यह एक जंगल का दृश्य हैं जहां बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पीछे एक काउंटर है जिसका व्हाइट कलर का है सामने काउंटर है जिसका ब्लैक कलर का है।

यहा एक लड़की खड़ी हुई है ये कुछ डांस कर रही है।

बगल में गेट है गेट का कलर व्हाइट है।

यह एक रोड का दृश्य है जहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है।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

बहो सारा गाड़ी है गाड़ी का कलर रेड है एक गाड़ी का कलर ब्लैक है।

सामने एक कुर्सी है जिसका कलर ब्लैक है।

एक ए_सी लगा हुआ है वाइट और ब्राउन में।

एक में कृष्ण जी बना हुआ है पीछे बहुत सारे पोस्टर रखे हुए हैं।

एक लड़की ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनी है एक लड़की व्हाइट कलर का पहनी हुई है।

पीछे बोर्ड लगा हुआ है बैद्यनाथ धाम।

अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक आदमी ब्लू कलर का शर्ट ब्लैक कलर का जींस और रेड कलर का जूता पहने हुए हैं।

एक झोपड़ी बना हुआ है झोपड़ी का कलर व्हाइट है।